एक घड़ी टंग रही है कुछ सर्टिफिकेट टंग रहे हैं।

अब एक लाख को लग रहो और बराबर में मीटर लग रहो।

यहां पर एक पानी की बॉटल रखी हुई है एक पर्स रखा हुआ है।

मंदिर में त्रिशूल बना हुआ है।

पिज्जे के बर्गर बना पिज़्ज़ा का पोस्टर है।

कुछ स्कूटी ख़डी हुई है लाल में हेलमेट है।

कुछ लड़ लेडीज हैं जो बैग टांग रही है। एक लड़का बैग टांग रहा है।

यहां पर एक ग्राउंड है।

पीले कलर की आइसक्रीम है और यहां पर चॉकलेटी कलर की आइसक्रीम है और उनपे कज्जू बादाम डल रहो।

यहां पर उ उ बालों की मशीन सी र --

बाल कटवाने और जिसे स्ट्रेट करवाने और यहां पर--

यहां पर एक रेस्टोरेंट है जिसमें एक ए_सी लगी हुई है दो।

पीछे बैलून से सर्कल बनाया गया है पिंक कलर वाइट कलर से।

ऊपर भी बैलून पिंक कलर के हैं व्हाइट कलर के हैं पंखे हैं।

यहां पर बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है।

बाइक प्वाइंट लिखा हुआ है यहां पर कुछ लड़ी से घर को सजाया गया है बहुत ही सुंदर सज रहा है।

कितने सारे घर हैं और यहां पर एक किश्तियां बहुत ब बहुत सारा पानी है यहां पर।

और बराबर में आसपास में कुछ नहीं देख रहा वो समुंदर है वो।

अस्पताल में ऊपर लाइटें लग रही है और यहां पर पंखे--

ऊपर सामने एक घंटा टंग रहा और--

हैं और यहां पर एक बोर्ड सा लग रहा और ए--

इसमें ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है।

एक मग रखा हुआ है।

कुछ लोग खाना खा रहे हैं।

एक सिक्योरिटी गार्ड डंडा लिए हुए बैठा हुआ है।

नीचे एक सफेद कलर की कुर्सी रखी हुई है।

यहां पर कुछ दुकानें हैं दुकान के बाहर कुछ कट्टे रखे हुए हैं।

क्योंकि देख रही है पीछे दुकान है बहुत सारी।

कोने मै एक पाइप है।

इसमें पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है एन आई एस सी ओ ।

यहां पर कुछ ब्राउन कलर की कुर्सियां है जिनके ऊपर कुछ पन्नी चढ़ी हुई है।

यहां पर कुछ कमरे से है छोटा कमरा है जिसमें एक छोटा सा गेट लगा हुआ है।

एक सीढ़ी है यहां पर--

एक खंभा है यहां पर कुछ छोटे छोटे पेड़ हैं।

यहां पर पानी भरा हुआ है बहुत ही सुंदर पानी है।

स्कूल के बच्चे हैं पैंट पहन रखे पैंट में हाथ दे रखे हैं।

बराबर में पेड़ पौधे हैं और बादल छा रहे हैं यहां पर।

यहां पर बरबर में दो तीन भीत्तर आदमी बैठे है यहां पर।

पेड़ वेड़ से लग रहा है ऊपर टीन से घिरी है।